नजर आ रहे हैं जो कि हरे कार्पेट पर खड़े हैं।

और इस रेस्टोरेंट का थीम एक रेगिस्तान की तरह बनाया गया है क्योंकि यहां पर चारों तरफ सोफों के बहुत सारी मिट्टी रखी गई है।

जिम का कार्डियो सीजन नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर बहुत सारी ट्रेडमिले रखी गई है जहां पर लोग दौड़ना चलना पसंद करते हैं।

इस फोटो के अंदर एक फेस्टिवल बनाया जा रहा है जहां पर बहुत सारी बच्चियों सफेद और रेड कलर की ड्रेस पहनकर नाचती हुई नजर आ रही है।

और इन सभी लड़कियों के सिर पर ल्ल लाल कलर की सेंटा वाली टोपी पहनाई गई है यह क्रिसमस का फेस्टिवल लग रहा है।

इस फोटो के अंदर एक मॉल का एरिया नजर आ रहा है। मॉल के एरिया में बहुत सारी दुकानें भी नजर आ रही है।

बड़ा घास का मैदान नजर आ रहा है उस बाउंड्री बहुत अलग-अलग तरह का प्रकार के पेड़ लगे हुए जिनकी कटिंग की हुई है डिजाइनदार में --

यहां पर काले रंग के कुर्सियां भी नजर आ रही है।

कार वर्कशॉप नजर आ रहा है जहां पर दो से तीन कारे नजर आ रही है और दो काले रंग के कारे नजर आ रही है।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

इस फोटो के अंदर एक बिल्डिंग का अंदर का एरिया दिखाया गया है जहां पर आई_एन_एक्स आई_एन_ओ_एक्स इनॉक्स लिखा गया है।